यहा एक बस खड़ी हुई है बस मे कुछ सवारी उपर बैठ रही है कुछ बैठ रहे है एक पुलिस वाला भी खड़ा हुआ पीछे एक कार दिख रही है।

आइट साइड खेल खिलौने के दुकाने लगी हुई है फुग्गे की दुकान लगी हुई है अंदर कुछ पेड़ दिख रहे है।